यहाँ पर कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एक आदमी अलमारी से कुछ उठता हुआ दिखाई दे रहा है जो नीली कलर की कपड़े पहने हुए हैं।

यहाँ पर रोड से एक कुत्ता चलता हुआ दिखाई दे रहा है रास्ते में बहुत ही बड़ा खजूर का पेड़ लगाया हुआ है सामने एक पत्थर भी--

यहाँ पर सामने के पास से रोड भी निकला है इसके चारों तरफ बहुत ही डिजाइनदार हरियाली सी छाई गई है।

कलर काला या सफेद साया दोनों ही बहुत ही अच्छा लग रहा है प्रभात से घांस फूस लगाए हुए हैइधर यहाँ पर बकरी चरती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर पीली सी कलर की दुर्वा होती पहले ही बहुत सुन्दर सीन लग रहा है।